मुझे इस तस्वीर में दिखाई दे रही है ये एक बहुत ही बड़ा सिंहासन है जिसमे ढुल्हा - दुलहन एक साथ बैठा करते हैं।

ये एक बहुत ही बड़ा मैदान है जहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ पे दो लड़कियां नजर आ रही है खेलते हुए।

एक बेटिंग कर रही है और एक पीछे फील्डिंग कर रही है। यहाँ पे विकेट भी नजर आ रही है। और यहाँ पे बेट भी नजर आ रही है। और एक बहुत बड़ा-सा नेट लगा हुआ है।

मुझे एक फल दिखाई दे रही है इस फल का नाम है काला अंगूर जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और यह कोई भी फल दुकान में आराम से मिल जाती है। हमारे घर के पास भी एक बाजार है।